बहोत ही सुंदर लग रहा है देखने में बाहर बहोत सारी कार और बाइक खड़ी हैं।

और यहाँ पर आजू - बाजू बहुत लम्बी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे--

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है की एक लम्बा सडक है यहाँ पर --

कुछ लोग गाडी से जाते हुए दिखाई दे रहे है साइकिल है यहाँ पर एक आदमी खड़ा है बगल में एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है कि यह कोई घुमने वाली जगह है बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में नजारा यहाँ का --

प्लेट रखा हुआ है जिसमें दो चम्मच है और कुछ--

देखने से ऐसा नजर लग रहा है ये कोई घुमने वाली जगह है यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट नजर आ रहा है।